जा रही है और एक बाइक वाला जो एक्टिवा लेकर जा रहा है और शॉप के आगे एक कार खड़ी है वहां पर एक गार्ड है और उसके बाजू में एक व्यक्ति पेपर पढ़ रहा है।

यहां पर एक चिकन शॉप का दृश्य है जिस पर अभी मारवाड़े चिकन शॉप नागरा लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे दो कि फोन नंबर लिखे हुए है।